इस दृश्य में लाल और सफेद रंग के डारिया फुल दिख रही है जिसके पत्ते हरे रंग के हैं।

नदी का पानी शांत है और भूरे रंग का है।

वही किले के ऊपरी हिस्से में डिजाइंस बने हैं।

वहीं स्टेज पे एक सफेद रंग का सोफा रखा हुआ है।

टेबल पर उनकी दो बॉटल दो नैपकिंस रखे हुए हैं।

वही लाल रंग के बॉर्डर बने हैं।

कार्यालय के सामने काफी सारे लंबे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

ये रोड पे जमीन पे ब्लू और सफेद रंग की पाइप लगी हुई--

ब्लू रंग के प्लास्टिक में रैप्ड कुछ और चीजें भी रखी हुई हैं।

वहीं वाशिंग मशीन और कूलर भी रखे हुए है।

इंडिगो की ऑन बॉडिंग फ्लाइट है जहां प्लेन पे इंडिया का फ्लेग लगा हुआ है।

नहीं दो सामने बुज़ुर्ग महिलाएं व्हीलचेयर पर देखे जा सकते हैं।

हां हरे रंग के पेड़ पौधे आंखों को लुभा रही है।

इस दृश्य में चार व्यक्ति घर के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं।

यह तस्वीर एक जूलरी शॉप की है जहां ट्रांसपेरेंट केस के अंदर सोने के गहने शोकेस करने के लिये लगे हैं।

जहां चार बच्चे ट्रैक पे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

साइड की दीवाल पर काफी सारे एडवरटाइजमेंट लिखे हुए हैं।